यहाँ एक लम्बा ब्रिज पानी में से बना दिखाई दे रहा है जो ब्रिज के ऊपर लोहे वाली पट्टी लगी हुई है।